बैंक में तीन आदमियां है। एक गार्ड गेट पे ठरा हुआ है दो आदमी है। शीशा का गेट है सीढ़ियां लोहा से घेरा हुआ है।

टेबुल कुर्सी पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक है --

झील बहोत सुन्दर दिख रहा है। झील के बगल से एक रास्ता गया हुआ है।